यहाँ एक लड़के का पुतला है जोकि बहोत सुन्दर दिखाई दे रहा है रेड कलर का टी शर्ट है पहना बहोत सारा कपड़ा है।

लगे हुवे है और-र आने जाने के लिए रस्ता दिख रहा है।

यहाँ मछली को रखा गया है बहोत सारे केरेट को ऊपर में यहाँ बहोत सारे लोग नजर आ रहा खम्भा दिखाई दे रहा है लोहे का रोड दिखाई दे रहा है नाली दिखाई दे रहा है।

एक आदमी एक अमरुद को अपने हाथ में पकड़ा है जो की डाल की समेत है हरा भरा दिख रहा है छोटा छोटा घास --

मिट्टी दिख रहा है भुट्टो के छिलके कचरा का दिख रहा है।

यहाँ वहां सारे जिम करने के सामान हैं सामने ही एक लड़का है जो जिम करने के लिए आ रहा है यहा का सामान का कलर काला है।